बोहोत सारे लड़कियां दिखरी है | कुछ कैप दिखरी है।

कुछ खाने की चीज दिख रही है| कुछ काऊ खा रही है।

पड़ी हुई दिख रही है कुछ पेड़ दिख रही है।

एक दुकान दिख रही है ।